और पानी में दो कुर्सियां पड़ी हैं एक नीले रंग की और एक पीले रंग की कुछ बोल्स हैं जैसे कि ग हरे रंग की बोल है पीले रंग की है और संतरी रंग कि बोल है।

जहां पर बहुत सारी कुर्सियां और टेबल लगे हुए हैं।

ये एक स्टेज है जहां पर एक लड़की खड़ी है जिसने अपने बाल खुले छोड़े हुए हैं।

ट्रेन में डेकोरेशन जो करी गई है वो गुब्बारों से करी गई है जो कुछ संतरी रंग के गुब्बारे हैं कुछ वो सफेद कलर के हैं और कुछ हरे रंग के हैं।

और कुछ बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं।

अलग अलग एक मैडम बच्चों को देख रही है।

और उनको कुछ टीचर्स खड़े होकर देख भी रहे हैं।

बोर्ड में लिखा स्टेट कार्गो पैकर्स एंड ट्रांसपोर्ट ।

जहाँ पे बहोत सारे ड्रावर्स बने हुए--

दो लोगों ने मेहंदी कलर की टी शर्ट पेहनी है और जींस पे है ब्लू कलर की--

मैदान में एक पेड़ भी लगा हुआ है।

बच्चों ने संतरी रंग का टॉप पहना हुआ है।

जिसमें एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है।

ये एक जनरल स्टोर है जहां पे अलग अलग सामान रखा हुआ है।

जो की एक से में पिंक कलर में है और एक ब्लू कलर में है।

ये एक होली हॉट्स स्कूल की बिल्डिंग है।